व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ चेयर दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिन पे कई सारी लाईट दिखाय दे रही --

ब्लैक ऑरेंज दिखाई दे रहा है और आसमान का कलर सिल्वार ग्रे दिखाई दे रहा हैं नदी मे कुछ पक्छिया दिखाई दे रहे है डॉक्स दिखाई दे रहे है जिनका कलर --

यह और दिवारो का करल ग्रीन और येल्लो दिखाई दे रहा है कुछ बॉक्सेस और बोरिया दिखाई दे रही है।

इस में कई सारी खिड़कीया दिखाई दे रही है जिनका कलर वाइट एंड ब्लैक दिखाई दे रहा है दिवार का कलर वाइट दिखाई रहा हे और गेट का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा हैं। कुछ पेड़-पोधे दिखाई दे --

यहाॅं पर कई सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है और कुछ फर्नीचर दिखाई दे रहा है जिसका ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है।

ओटो का कलर रेड पिंक वाइट येलो दिखाई दे रहा है और कुछ फुल भी दिखाई दे रहे है यहां पर सतह का कलर ग्रीन और--